सुमित बजाज सुमित ज्वेलर्स दिख रहा है।

एक्सरसाइज मशीन दिख रही हैं।

एक लड़की दिख रही है लड़की डांस कास्टूम मे दिख रही है एक रेड कलर का बैनर दिख रहा है बैनर पे --

ब्लैक कलर की फर्सी दिख रही है घास दिख रही है रेड कलर की कुर्सियां दिख रही है।

यह दो सफेद कलर के पिलर दिख रहै है दो प्रोपर पार्ट रखे हुए दिख रहै है।

लकड़ी का एक टेबल रखा हुआ दिख रहा है टेबल पे कुछ बर्निया रखी हुई दिख रही है।